और दो बड़े -बड़े पेड़ है जहाँ पे एक गाड़ी भी रखी है और साइकिल भी ऱखी हैं।

और उसके साइड में एक शर्ट --

लेडी है और दूसरी साइड में एक पोस्टर है जहाँ पे पेट्रोल पम्प की--

और कुछ बिल्ड चेयर्स रखी हुई है एक बेन भी रखे हुई है।